एक बड़ा सा कमरा है और उसमे कई अः मशीन बड़ी-बड़ी मशीन रखी हुई है और फैन लगे हुए है।

और अ टाइल्स लगे हुए जमीन पर अ सफेद रंग के और काफी बड़ी मशीन नज़र आ रही है।

इसमें एक बाज बगीचे में हमें नजर आ रहे है --

एक गेट लगा हुआ है कांच का और कांच के उस तरफ अः लोग दिखाई दे रहे है दो तीन लोग खड़े --

और ब्लैक कलर का गेट है और बाहर एक अ गाड़ी खड़ी हुई है वो नज़र आ रही है।

बड़ी अः खूबसूरत सी दो गाड़िया खड़ी हुई है एक लाल कलर है अः एक का और एक ग्रे कलर की है।

किचन है बड़ा सा एक किचन उसमे एक आदमी खड़ा हुआ है।

अ ये बर्तन काफी नजर आ रहे है इसमें पानी की टंकी--

ज्यादा पुरानी नहीं है लेकिन उसके बाहर --

क्रिश्चन समुदाय में जो नन होती है उस जैसी दिखाई दे रही है--

अमूल लिखा हुआ है लाल कलर के बोर्ड पर और नीचे पिज़्ज़ा बड़ा सा बना हुआ है उस पर पिज़्ज़ा लिखा हुआ है।

और सामने बिल्डिंग भी बनी हुई है उस पर बोर्ड लगा हुआ है डीएचएल का--

और उसके पास साइकेले दो खड़ी हुई है दिखाई दे रहे है गमले रखे --

जिस पर अमित बुक डिपो लिखा हुआ है चंडीगढ़--

ग्राउंड फ्लोर सेक्टर चंडीगढ़ और ये एक बूके-बुक डिपो है।

बैठी हुई है और सफेद कलर की अ टेबल पर कपड़ा डला हुआ है।

के पास अ मैदान सा है उसमे--

ईमारत जो बनी हुई है वो नजर आ रही है वो काफी बड़े पेड़--

तस्वीर में हमें बड़ा सा कांच नजर आ रहा है लगा हुआ है और उसके नीचे एक सोफा बड़ा सा--

दुकान बनी हुई है जिसके ऊपर बोर्ड लगा हुआ है माई फ्रेश का--

छोले-भटूरे लिखे हुए है और छोले पूरी लिखी है।

अ ये सारे अ जो भीड़ इखट्टा है अ कुछ महिलायें --

अः पानी भरा हुआ है बीच में पानी का तालाब और इस तरफ पानी के इस तरफ ये--

अ बड़े-बड़े तरबूज़ रखे है संतरे है और लाल-लाल सेब रखे हुए है नीला --

और ये अः एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है और दोनों तरफ छोटे-छोटे गमले लगे हुए है गमले के अंदर--

छोटे-छोटे पोधे लगे हुए है और एक बिल्डिंग की नज़र आ रही है लाल कलर की बिल्डिंग --

ये आधुनिक वस्त्रो की दुकान है जहाँ पर काफी अच्छे अ दिखाई दे रहे हैं दुल्हन का शादी का ये जोड़ा उसकी शॉप है ये।

खाली पूरा कॉरीडोर नज़र आ रहा है और जिसमे बड़ी सी एक चेयर रखी हुई है और टेबल रखी है उसके उपर पॉट रखे हुए है।

और गुलदस्ते बड़े-बड़े और दो चेयर है ये और सामने की तरफ लकड़ी की पूरी अलमारी नज़र आ रही है।

एक बड़ी सी होटल की तस्वीर है ये और जिसके ऊपर नाम लिखा हुआ है लेमन ट्री होट--

तस्वीर में हमें ये मछली मार्केट नजर आ रहा है इसमें बहोत सारी मछलियां और भी--

ऑरेंज कलर की साड़ी में एक और नजर आ रहे है और एक ए--

इसमें हमें एक ब्रिज नज़र आ रहा है बड़ा सा एक ब्रिज गया है जो उसके नीचे से पानी--

और जो अः तालाब जैसा भरा हुआ है पानी वो नज़र आ रहा है वो काफी बड़ा ब्रिज है।

इसमें सड़क पर हमें कई सारी गाडियाँ और आदमी औरत चलते फिरते नजर आ रहे हैं और एक बाइक पर ये एक आदमी और एक महिला बेठी हुई है।

बोर्ड लगा हुआ है और बंधन बैंक का जो बोर्ड लगा हुआ है--

अ आगे गमले रखें हुए पेड़ पौधे और एक आदमी है जो--